डस्टबिन दिखायी दे रहा है। पास की सीढ़ी दिखायी दे रही है। गमले दिखायी दे रहे हैं। बोटल दिखायी दे रही है।

वॉल घड़ी दिखाई दे रहा है एक पंखा दिखाई दे रहा है। कलरफुल लाइटे दिखाई दे रही हैं।

टेबल व कुर्सियां दिखाई दे रही हैं। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा हैं। मेनु कार्ड दिखाई दे रहा हैं। पंखे दिखाई दे रहे हैं।